आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधा भी मौजूद है।

यह एक सड़क का दृश्य है यह सड़क बहोत पतला दिखाई दे रहा है।

यहां पर अंदर की दीवारें उजले रंग की दिखाई दे रही है।

यह एक स्टेज का दृश्य है स्टेज में एक उजले रंग का सोफा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर आस पास में बहुत सारा बड़ा बड़ा पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहा है।

दीवार के ऊपर में एक लाइट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसके बाहर में ही करकट लगा हुआ है और ऊपर में एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लीला फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम के अंदर का दृश्य है।

वहीं पर एक दरवाजे में एक गार्ड भी खड़ा दिखाई दे रहा है।